साथ ही बैंक के अंदर एक औरत भी है।

पीछे की तरफ एक बरा सा पैर है।

ऊपर काफी सारे पंखे चल रहे हैं।

और दीवाल का रंग वाइट है।

दुकान है जहां पर पढ़ने और खाने के काफी सारे दुक सामान बिक रहे हैं।

कफिश सारे घास उगे हुए हैं और आगे काफी बड़े बड़े पेर और कुछ छोटे पौधे हैं।

यह फोटो एक जिम का है जहां पर काफी सारे लोग--

नीचे की फर्श पे कारपेट बिछा हुआ है।

और कुछ लोग दाही कटवाने के लिए इंतजार कर रहे हैं।

इसमें काफी बड़े बड़े मिरर लगे हुए हैं।

साथ ही एक बड़ा-सा टी_वी भी है।

और महजिद वाइट और ग्रीन रंग की है।

काफी सारे लोग हैं।

फोटो एक मैरेज हॉल --

जहां पर काफी सारे सोफा लगा हुआ है।

फूलों की मार्केट का है।

एक आदमी पब से बाइक धो रहा है।

क कपड़ा गिला कर रहा है।

इसमें एक पंखा एक टी_वी एक घड़ी एक ऊपर शायद झूमर तीन बल्ब --

यह फोटो एक हॉस्पिटल का है जहाँ पर काफी सारे व्यक्ति मास्क लगाकर है।

जिसके अंदर से काफी पानी निकल रहा है और दोनों तरफ कुछ पेर भी है इसमें एक--

व्यक्तिऔर एक औरत भी है।

यह फोटो एक मेले का है जिसमें टेडी बियर घोड़े वाला झूला --

छोटी सी बाइक भी लगी हुई है।

इसकादीवाल का रंग येलो और नीचे की फर्श का रंग वाइट है।

यह फोटो एक पेट्रोलियम का है।

हॉल का है जहां पर काफी सारे व्यक्ति बैठकर अपना काम कर रहे हैं।

और इसमें एक व्यक्ति खड़ा है।

और इसमें कुछ पेर पौधे भी हैं।

और आगे की साइड कुछ--

घर भी नजर आ रहे हैं।

इसमें काफी सारे लोग साथ बैठे हैं।

छत की गार्डन का है जहां पर काफी सारे गमलों में पेड़ पौधे उगाए गए हैं।

ग्रिल भी लगाई गई है और पीछे काफी सारे घर हैं।

कूल के पार्क की है।

में काफी फूल भी नजर आ रहे हैं।

जो ब्लैक की प्लेट में है।

चारा भी नजर आह रहा है।

साथी यहां पर एक डिजाइनिंग हाउस भी है जिसके बगल में काफी सारे गमले हैं।

और आगे की साइड में डिज़ाइन से फूल लगे हैं।

कार की पार्किंग लॉट का है।

जहां पर फोर व्हीलर कार्स पार्क हुई है।

और इसके अगल बगल कुछ बिल्डिंग्स भी नजर आ रहे हैं और कुछ पौधे भी--

यह फोटो एक मार्केट का है।

जहां परएक रोड और एक बरा पेर नजर आ रहा है।

साइड कुछ बाइक्स पे आदमी भी हैऔर एक ऑटो भी--

और उसके अगल बगल काफी सारे--

गमले हैं और बीच में एक पौधा है।

यह फोटो एक बड़े से फोंट के पास ली गई है।

जहां पर काफी सारे तरह के कोल्ड ड्रिंक्स और मेकअप के शामान भी बिक रहे हैं।

यह फोटो दशावन के टाइम का है।

जिसमे एक ट्रक से गॉड की प्रतिमा जा रही है।

टेरिस् पे ली गई है।

और पीछे कुछ बिल्डिंग्स भी है।

बेडरूम का है इसमें एक बेड लगा हुआ है।

ब्लू टेबल भी है जिसके ऊपर--

बोतलवगैरह भी रखा हुआ है।

साथी इसमें ग्लास भी लगा हुआ है।

यह फोटो एक काफी लजीज डिस की है।

जिसमें एक सादा चम्मच और एक--

काटा चम्मच है जो वाइट टेबल पर रखा हुआ है।

हेय काफी स्वादिष्ट डिश लगी हुई है।